ये एक हॉल है जिसमें कई सारे लाइट से--

चेयर्स है चेयर पे लोग बैठे हुए हैं।

ये एक फार्मेसी का फोटो है जिसमें कई सारे मेडिसिन है।

इस फोटो में एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ बड़े-छोटे पैड है।

व्हाइट कलर के सोफे है सोफे पे कुशन है डिजाइन किए गए बड़े-बड़े पिलर्स है लाइट्स है।

इस फोटो पे एक रास्ता है औरत है।

बजाज फिनसर्व ज़ीरो पर्सेन्ट लिखा हुआ हैं टाटा स्काइ लिखा हुआ हैं।

एक बैठने का डेस्क है बड़े-बड़े बक्से है।

वाइन के बोतल्स है रेड कलर के ब्लैक कलर के ग्रीन कलर के--

ये एक गाड़ी का शोरूम है जिसमें हमें ब्लू कलर की गाड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है बड़े-बड़े पिलर है।

एक चेयर है पीछे दीवार पे एक व्हाइट बोर्ड है ए_सी है।

इसमें कई सारे लोग खेल रहे हैं छोटे बच्चे खेल रहे हैं।

जिसमें कई सारे डिजाइन बने हुए हैं वाल पे नीचे कारपेट है।

कई तरह के पुतले है टेडी बियर है बार्बी डॉल है स्पाइडरमन है बैटमन है डोरीमन है सुपरमन है।

आकाश का इसमें पैरामाउंट सेंटर लिखा हुआ है आगे इलेक्ट्रिक पोल है।

कई सारे लोग हैं खरीद रहे हैं गाड़ियां हैं बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं पैड है।

इस फोटो में हमें एक नदी दिखाई दे रही है।

पिलर्स है चारों तरफ पैर है लोगों के घर है छोटे-छोटे--

एक के ऊपर और एक खड़ा होके एक लड़के के हाथ पे--

फ्लैग है पीछे दीवार है ब्लू कलर के लाइट्स है।

इस फोटो में हम देख सकते हैं ये एक चश्मे का दुकान है जिसमें कई तरह के--

रेक्टेंगलर शेप में बड़े-बड़े पत्थर है छोटे पत्थर है बड़ा सा एक पैर है।

इस फोटो में एक गार्डन है एक बिल्डिंग है गार्डन के बीच में पेड़ से गोला शेप बना हुआ है।

इसमें फूल लगा हुआ है नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट है।

इस फोटो में कई सारे ट्रक्स है गाड़ी है ट्रक के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है।

यह एक फिश मार्केट की दुकान है इसमें कई तरह के फिश है।

कई सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं एक पर्स है।

इसके नीचे कई सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं।

कुटी है एक आदमी है ऑरेंज कलर का पिलर है।

कई सारे रेक्स है लाइट्स है बल्ब है फैन है।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है जिसमें बेंच है डेस्क है।

और भी दुकानें हैं जिसके बाहर भी कई सारे बुक्स लेकर दो आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक होंडाई का कार शोरूम है जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स है।

दुकान है जिसमें येलो कलर की फूल पिंक कलर की फूल रंगबिरंगे कलर की--

यह एक बड़ा सा मैदान है जिसमें एक गोल पोस्ट है।

इसके पीछे और सारे बहुत पेर है।

एक घर बनाया जा रहा है जिसमें ग्यारह लोग मिलकर काम कर रहे हैं।

बिल्डिंग के पीछे और भी कहीं सारे बिल्डिंग्स है बड़े बड़े पेड़ है।

ओनली ए_सी लिखा हुआ है ट्रेवल्स लिखा हुआ है।

ब्लैक कलर की शो है एक कुत्ता है जिसके शरीर के ऊपर ब्लू कलर की लाइट्स है।

और बहुत सारे लोग हैं ये एक जिम का फोटो है।

पीछे एक स्कूटर की फोटो है सीढ़िया है गेट से--

टेबल है उसके ऊपर कई तरह के फाइल्स है।

पेन है ग्लास है दरवाजे है।

इस फोटो में हमें कई तरह के दुकान दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के अंदर लोग खरीददारी कर रहे हैं।